यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

है जीसमें सफाई नहीं होती झड़े हुए पत्ते--

मान्यता है इस्लामी आफरीदों का मुक्तखर बयान भी है।

डॉक्टर एम_पी आदित्य डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल डॉक्टर राव पटेल तथा--

कोलंम व दिवारे काले रंग की बनाई गई है।

यह तस्वीर एक ऐसी जगह की तस्वीर है।

यह तस्वीर एम_पी पब्लिक स्कूल की है जहां पर कुछ बच्चे एक--